यहाँ पर हमें एस_बी_आई ए_टी_एम मशीन रखी दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहुत सारे लोग पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहें हैं इसके अंदर भी लगी दिखाई दे रही है और यहाँ पर--

सारी स्कूटी और गाड़ी रखी दिखाई दे रही है यहाँ पे बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां पे एक नया गेट दिखाई दे रहा है उस के अन्दर एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जिसमे अलग अलग रंग की बस रखी हुवी दिखाई दे रही है कोई--